चेयर है जिसपे तावल रखी हुई है।

काउंटर काउंटर बना बना के इसमें कुछ सामने रखी हुई है।

इसमें खाने की टिफिन भी है तथा पानी के कैम्पर बीच मे रखे गए हैं।

यहाँ पे ए_टी_एम से पैसा निकाले जा रहे हैं।

दीवाल में जो है बोर्ड लगा हुआ है।

पेड़ भी लगे हुए हैं और आगे की तरफ दीवार भी है।

वैन के साइड साइड में दो पेड़ है।

जो कि पेन पेंसिल कलर का है।

अंदर की तरफ में भी कुछ लड़कियां खड़ी हुई है जो थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रही है।

कार जो ब्लैक कलर की है तथा इसको धुला जा रहा है।

इसके आगे छोटे छोटे गमलों में छोटे छोटे पेड़ लगाया हुए हैं।

इसमें एक टीचर है जो बच्चों को पढ़ा रहा है लड़कियों को कुछ लड़कियां हैं कुछ लड़के हैं।

लड़कियां जो चेयर पे बैठी है चेयर जो ब्लैक कलर की हैं।

में दीवाल जो है गोल्डन कलर की दीवाल है।

एक किसी तरफ देख रही है।

एक आदमी है। एक लड़की है। एक टेबल पे तथा एक छोटी सी बच्ची और उसकी मां है।

पानी इसी बहोत इसके आगे बहोत बड़ी नदी है साइड साइड में बहोत ही सारे पेड़ हैं।

को लोग बैठ के इन्जॉय कर रहे हैं जिनका बस सर ही दिख रहा है।

लाल कलर से डेकोरेट किया गया है इसको दिए में दिए में मोम जलाया गया है।